और यहां पे अंधेरा है साइड में जो रात का टाइमिंग है और यहां पे भी--

मोनालिका लिखा हुआ है। वर्ष नंबर वन हैवी टैक्टर जो यहां पे बेचने के लिए लाएं हुए है और दो यहां पे है।

फिर मारा गया है और यहां पे बहुत सारे टायर है और यहां पे एक वोट रखा लगाया हुआ है।

एक बड़ा सा पहाड़ है जो यहां पे लोग आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए।

यहां पे एक आदमी है और एक लेडी है जो यहां पे काम कर रहे हैं। एक यहां पे फल--

और अंदर जाने के लिए यहां पे गेट है और यहां पे आसमान नीला नजर आ रहा है।

एक रूम नजर आ रहा है जिसमें यहां पे शो के चीजा रखे गए है।

ईट लवर और यहां पे लिखा है व्हेन आय नीड अ हैंड आय फाउंड यूअर --

और यहां पे बहुत सारे लोग ठहरे हैं घर दिख रहे हुए हैं यहां पे।

और हरा भरा घास है और यहां पे कंपाउंड उभारा गया है और यहां पे एक पेड़ हैं।

यहां पे एक लड़का है जो यहां पे हाथ में फूल लेके--

वहां पे एक पार्क है जो यहां पे बहोत सारे हरे भरे पेड़ है और यहां पे फूलों वाले भी है।

यहां पे ह़ै ये ग्रीन कलर की बिल्डिंग नजर आ रही हैं।

यहां पे एक दुकान है दुकान में यहां पे कलर के डब्बे रखे गए हैं और यहां पे बहोत सारे रखे गए हैं।